कार में एल_आर संस लिखा है साथी में यहां पे--

उसके चादर लगी है। उसके शॉप के ऊपर वहां पे चादरें वगैरा लगी हैं।

पानी का फुहारा ओर पीछे मटका है एक पानी का वो भी दिखाई दे रहा है वहां पे हमें।

यहां पे हम देख सकते हैं कुछ फूलों की एक शॉप लग रही है जहां पे फूलों की माला दिखाई दे रही है वहां एक आदमी दिखाई दे रहा है उसे बेचता हुआ।

यहां पे हमें दिख रहा है कि एक शोरूम है शूज का शोरूम शायद--

ग्रीन ग्रीन या ब्लू ब्लू कुछ ऐसी कलर की है।

इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये कुछ कार्स वगैरह लाइन में लगी हुई है नीचे पार्किंग टाइप की कुछ बिल्डिंग ऊपर शायद बस स्टैंड का एरिया है कुछ ऐसा।

और सीट सोफे टाइप के हैं वो और वहा पे कुछ रखा हुआ है बहोत सारे सामान वगैरा रखे है वहां कंप्यूटर की स्क्रीन भी मुझे दिख रही है कीबोर्ड भी।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

यहां पे एक शायद म्यूजियम टाइप का कुछ है या वहां पे पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ और यहां पे सामने ही एक--

और साइड मे कुछ पत्ते दिखाई दे रहे है छोटे छोटे पेड़ बगैरा भी ही दिखाई दे रहे हैं।

और उसके साइड में ये रोड दिखाई दे रही है।